दिए गए चित्र पे यहां दो लोग बैठे हुए हैं एक महीला एक पूरुष--

ब्राउन और व्हाइट कलर में इनकी चेक में डिजाइन है लाइटे काफी अच्छी लग रही है।

ये चेयर काफी सुंदर लग रहे हैं जो ऑफिस चेयर है और टेबल भी बहोत सारे इनामों से भरा पड़ा है।

काफी रिच लुक दे रहा है।

नीचे मैदान पूरी तरह से साफ सुथरा है।

यह जो चित्र हमें अगला प्राप्त हुआ है यह एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक समान के जैसे लग रहा हैं।

और पीछे एक रखी हुई है।

नहीं है कपड़े भी रैक पे टंगे हुए हैं।

बहुत सारे केक नजर आ रहे हैं ऊपर बहुत सारे--

आसमान काफ़ी साफ लग रहा हैं और मछलियां बिलकुल--

नीचे जो टाइल्स है वो सफेद कलर की चेक वाली लाइटें अह फर्श लगी हुई है।

और एक कूलर रखा हुवा है और कपड़े जो है अस्त वस्त फैले हैं।

और गेट के अंदर रखी हुई है और गेट की जो है ब्लैक कलर में पेंट है।